इस छवि में ट्रैन नहीं दिखाई दे रही--

तो यहां हमें एक छोटी सी बकरी की छवि दिखाई दे रही है।

फ्लैट बहुत ही बड़े इमारत पर बना हुआ है।

जिसके बीच एक छोटा सा जीव है।

यहां हमें एक छोटी सी दुकान दिखाई दे रही है।

तो हमें यहां एक कंस्ट्रक्शन की छवि दिखाई दे रही है।